और बिल्डिंग भी बोहोत लंबा-लंबा हैं पुराना ये है।

ई रिक्शा है और एक साइकिल भी बगल में खड़ा है। चार-पाँच ई-रिक्शा है ऊऊ घर के अंदर खड़ा है।